घूमते हैं नजारा के लिए सेल्फी लेते हैं दिखाने के लिए मैं आया था बाहर घुमने के लिए।

सेल्फी लेने के लिए उतने खतरे नहीं उठानी चाहिए समझ में ही नहीं आता है इनलोग को--

आसान क़िस्त में आपको लोन गाड़ी मिल जाते हैं हूं कुछ ज्यादे कम ये ये ग ब नेचरल गेस वाले हो गए हैट्रिक हैट्रिक हो गए।